और एक आदमी भी खड़ा हुआ है गाड़ियां दो हैं एक काले कलर की एक सिल्वर कलर की और सफेद कलर कि है और यहां पेड़ जो हैं वो हरे भरे दिख रहे हैं।

नेट लगा हुआ है और आदमी लोग यहां पर रैकेट पकड़ा हुआ है इधर से भी पकड़ा हुआ है.

यहां पर टोटल चार गाड़ियां खड़ी हुई है इन चारो गाड़ियों की सर्विस हो रही है।

यह एक पिज़्ज़ा का क्लब है उसको लिखा है डोमिनोज पिज़्ज़ा ।

इस पे लिखा हुआ है वोयल जनरल स्टोर एंड फोटो स्टेट इसके बगल में एक और पैनल लगा है जो पीले कलर का है.

यहां पर एक आदमी पार्क में घूमने के लिए आया हुआ है.

मुझे लग रहा है जैसे कि ये डरावना घर टाइप का है और यहां पर पंखा भी एक लगा हुआ है.

इसका नाम बीटेक फॉर्म है और यहां पर एक अंदर वाल गेट से गाड़ी जा रही है।

जो की भुरे कलर की दिख रही है क्योंकी व्हैन है।

पैंट पहने हुए है जो तरह-तरह के कपड़े निकाल के कस्टमर को दिखा --

आसमान नीले कलर का दिख रहा है पेड़ पौधे बहुत ही घने दिखाई दे रहे हैं सभी लोग अपना मैच खेल रहे हैं।

यह एक टाइल्स की दुकान है यहां पर पूरी तरीके के टाइल्स लगे हुए हैं और कुछ कुर्सियां भी है लंबी सी मेज भी रखी है जमीन --

दरवाजा सामने वाल है। इसकी बगल में एक और दरवाजा है जो कि भूरे कलर का है।

प्रिंटिंग क्लास प्रिंटिंग और विजिटिंग कार्ड सब कुछ--